और एक बड़ा टेबल दिखाई दे रहा है जिस पे प चार पांच लैपटॉप दिखाई दे रहे है जो काले रंग का है।

और कुछ तार दिखाई देरा है और कुछ सी_पि_यु और माउस दिखाई देरा है।

और कुछ तस्वीरें दिखाई दे रहा है।

एक बगल में कुछ बर्तन दिखाई दे रहा और टेबल दिखाई दे रहा और ड्राम दे रहा--

ये एक रेस्तोजेंट यहाँ पर बहुत सारे चेयर कुर्सी और टेबल दिखाई दे रहे हैं टेबल के ऊपर जैसे--

यहाँ पर तीन बड़ा-बड़ा कुर्सी दिखाई दे रहा है।

और एक गणेश भगवन जी का मूर्ति दिखाई देरा ठीक बगल में एक कंप्यूटर है।

ठीक उसके बगल में एक सोफा सेट दिखाई देरा जो सफेद रंग का है और--

और उपर में बड़े बड़े खिड़की दिखाई देरा है जो काच का है एक सामने में गेट दिखाई देरा है जो काले रंग का है और उपर में लिखा हुआ है लिप--

ये एक मंदिर है मंदिर के ऊपर श्री शनि धाम मंदिर--

बाहर में एक बच्चे का जूता दिखाई दे रहा है।

एक बुढ़िया जो अंदर में बैठी हुई है साड़ी पहन के --

पुल के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो लाल और नीले रंग का शर्ट पेंट पहने और सर में टोपी लिए खड़ा है।

और पानी बिलकुल सफेद दिखाई देरा है और बोहोत सारे पेड़ पोधे दिखाई देरे है और पानी के अन्दर एक टेंट दिखाई देरा है।

यह घर दिखाई दे रहा है घर पुरे लाईट से सजाया गया है और बहोत सारे फूलो से सजाया गया है।

और नंबर दिया है डबल सेवन वन डबल सेवन डबल फाइव सिक्स जीरो फाइव --

पानी का रंग बिलकुल लाल और सफेद दिखाई दे रहा है और बिच्च बिच्च में कही बूंद वुंद दिखाई दे रहा है।

ये शोरूम है यहाँ पर एक बहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पर लिखा हुआ है--

कुछ लोग आसमानी रंग के कपडे पेने और कुछ हरे रंग के पहने है ।

और दो ऊँगली दिखा कर खड़े है और मुह में मास्क लगाया है और सर पर टोपी लिए खड़े है।

और बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है और नीचे में कुछ ड्राम दिखाई दे रहा है और कुछ बर्तन भी।